यहाँ पे मिठाई का दुकान है। यहाँ पे सब प्रकार के मिठाई-स् न्-न्- मीठा मे म्-मिठाई मिलता है और यहाँ पे ग्राहक --

और वजन के हिसाब से मिठाई लेते हैं। यहाँ पे दुकान मे लाइट लगा है और कांच में सब मीठा रखा है।

और बोहोत बड़े-बड़े पत्थर हैं यहाँ पे ब्लैक एण्ड व्हाइट है और सिर्फ लड़का जो है --

पी टी हो रहा है और जो है बिल्डिंग है और यहां पे स्टूडेंट सारे हैं। यूनिफॉर्म व्हाइट कलर मे पहने हुए हैं और --

यहां पे सब टावर दिख रहा है। टावर और आसमान भी यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे --

ये जो है हाजीपुर जंक्शन है और येलो कलर से लिखा हुआ है ब्लू बोर्ड है।

पेड़ यहां पे है और एक छोटा सा बच्चा खड़े होकर मुस्कुरा रहा है और अपना सेल्फी ले --

सब सेल्फी ले रहे हैं उसका लेखा सब फूल हैं। बे बगीचा है यहाँ पे।

आसमान भी दिख रहा है और छत पे दो महलें का है। विंडो भी है। ग्रिल लगा हुआ है एक।

ये माल है दुकान है और यहां पर सब सेल लगा हुआ है। यहां पे फ्लावर हैं और तरह तरह के सामान यहाँ बिकते रहते हैं और --

लाइदेरा जी स्कूल है बच्चे छोटे बच्चे का स्कूल यहाँ पे है बहुत खूबसूरत स्कूल है।

यहां पर बोहोत सारा मेला लगा हुआ है। बोहोत दूर-दूर से यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं।

और बाहर इंटरलॉक है। साफ सुथरा है। बगल में जो है खेत है। वहाँ पे छोटे छोटे घास हैं।

और यहां पे ईटा सब बिछाया हुआ है। सब प्लास्टर है यहां पे ।

रेड कलर से ओट है और माथे पे तिलक भी रेड से है और यहाँ पे --

ठेले पे है और बाल्टी भी है यहां पे ।

उनसे बातें कर रहे हैं समजा रहे हैं और सब लोग खड़े होके नीचे मुंडी करके खड़े हैं।